यहां पर हमें एक टेबल पर--

यहां पर हमें एक बड़ा सा पुल दिखाई दे रहा है।

जिसमें की दो कुर्सियां और अलमारी भी रखी हुई है।

यहां पर पीछे की तरफ एक दरवाजा है जिसे हार फूल से सजाया गया है ऊपर एक बेल दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें एक सैलून दिखाई दे रहा है जिसमें की--

टेबल है जिस पे की ऊपर की तरफ प्लाई लगी हुई है।

यहां पर हमें नर्सरी में कुछ पौधे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक क्लिनिक दिखाई दे रहा है जो की एक डेंटल क्लिनिक दिख रहा है।

यह मंदिर नाग महाराज का दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें एक बाजार की एक छोटी सी गली दिख रही है इस गली में छोटी-छोटी दुकानें दिख रही हैं।

और इन दुकानों पर बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

इस किले के मंदिर टाइप में पिलर जो लगे हुए है उसमें छोटे छोटी मूर्तियां बनी हुई दिख रही है।

बहुत सारी एल_इ_डी लाइट्स लगी हुई है।

यहां पर और भी गायें खड़ी हुई हैं।

उसके सामने की तरफ एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी चालू है और यहां पर बहुत सारे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं।

स्टेज बना हुआ है जिसे फूलों और लाइट से डेकोरेट किया गया है।

और यहां कुछ लोग काम करते दिख रहें हैं।

चैन बने दिख रहे हैं जिस पर की--

यहां पर हमें एक केबिन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर दो सौ छ लिखा हुआ है नंबर --